इस फोटो में एक बड़ा घर बनाते हुए कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे काठ की लकड़ियां हैं और बांस भी रखे हुए हैं।

और एक बड़ा सा खंभा भी दिखाई दे रहा है।

और इन समानों को पीले रंग की अलमारी में रखा गया है।

फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक पंडित भी दिखाई दे रहा है जिन्होंने--

सामने कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी नजर आ रहे हैं।

इस दुकान के अंदर लाइट भी लगाई हुई है।

दुकान की दीवारों को सफेद रंग से पेंट किया गया है।

ओढ़ने के लिए कम्बल भी रखा हुआ है और।

इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो कि इधर-उधर जा रहे हैं।

यह एक बहुत बड़े घर का चित्र है जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।

लाल रंग का चाट भी बिछाया गया है।

ट्री साइड में खंभा भी गड़ा हुआ नजर आ रहा है जिस पर--

यह किसी फंक्शन का फोटो है जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और रंग बिरंगी लाइटे भी लगाई हुई है।

इस मेडल के दोनों साइड दो पुतला दिखाई दे रह है और--

दुकान के बाहर दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

लगे हुए हैं और उन पर लाइटें भी लगी हुई है।

और सामने एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है यह पेट्रोल टंकी जगह --

इस गेट को हरे रंग से पेंट किया गया है।

इस फोटो में बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बोर्ड नजर आ रहे हैं और सामने खिड़कियां भी नजर आ रही है।

सफेद रंग से पेंट किया गया है इस घरों में--